लिबर ऑफिस राइटर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है - इस ट्यूटोरियल में हम राइटर के बारे में सीखेंगे
राइटर में भिन्न टूल बार
एक नए डॉक्युमेंट को और एक मौजूदा डॉक्युमेंट को कैसे खोलें
एक डॉक्युमेंट को कैसे सेव करें और राइटर में डॉक्युमेंट कैसे बंद करें
लिबर ऑफिस राइटर लिबर ऑफिस सूट का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है
000027 000026 यह माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड के बराबर है
यह एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अतः इसका किसी प्रतिबंध के बिना आदान प्रदान संशोधन तथा वितरण कर सकते हैं
चूँकि यह फ्री है इसलिए इसका आदान प्रदान बिना किसी लाइसेंस शुल्क के किया जा सकता है
लिबर ऑफिस सूट के साथ शुरुआत करने के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ 2000 और इसके उच्च वर्ज़न जैसे कि एमएस विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं या आप gnuलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं
यहाँ हम GNUलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तथा लिबर ऑफिस सूट 334 वर्ज़न का उपयोग कर रहे हैं
यदि लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं किया है तो सिनाप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके राइटर संस्थापित कर सकते हैं
सिनाप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया लिनक्स ट्यूटोरियल को देखें और इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें
विस्तृत निर्देश लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में मौजूद हैं
याद रहे राइटर का संस्थापन करते वक्त कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें
यदि आपने लिबर ऑफिस सूट का संस्थापन पहले ही कर लिया है आपको लिबर ऑफिस राइटर मिलता है जब आप स्क्रीन के ऊपरी बाएँ कोने में एप्लिकेशंस ऑप्शन क्लिक करते हैं और फिर आफिस तथा लिब्रियोफिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
विभिन्न लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डाइलॉग बॉक्स खुलता है लिबर ऑफिस का उपयोग करने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें जोकि सूट का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है
मुख्य राइटर विंडो में यह एक रिक्त डॉक्युमेंट खोलेगा
राइटर विंडो में विभिन्न टूल बार हैं जैसे कि टाइटल बार मेन्यू बार स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मैटिंग बार तथा स्टेट्स बार जिसमें ज्यादातर उपयोग में आने वाले ऑप्शंस हैं जिन्हें हम आगे ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
चलिए ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं राइटर में एक नया डॉक्युमेंट कैसे खोलें
स्टैंडर्ड टूलबार में न्यू आइकन पर क्लिक करके आप एक नया डॉक्युमेंट खोल सकते हैं
या मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें
और फिर न्यू ऑप्शन क्लिक करें और अंत में टेक्स्ट documentऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि दोनों ही मामलों में एक नई राइटर विंडो खुलती है
अब एडिटर एरिया में कुछ टाइप करें
तो हम टाइप करते हैं रिज्यूम
जब डॉक्युमेंट लिख कर हो जाए भविष्य में उपयोग करने के लिए उसे सेव करें
इस फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू बार से फाइल पर क्लिक करें
और फिर सेव एएस ऑप्शन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक डाइलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ आपको नामे फील्ड में आपकी फाइल का नाम एन्टर करना होगा
तो आपकी फाइल का नाम रिज्यूम एन्टर करें
नामे फील्ड के नीचे सेव इन फोल्डर है
फील्ड जहाँ पर आपको फोल्डर का नाम एन्टर करना होता है जिसमें आपकी सेव की हुई फाइल होती है
सेव इन फोल्डर फील्ड से डाउन एरो पर क्लिक करें
आप मेन्यू में फ़ोल्डर्स की सूची देखते हैं जहाँ आपकी फाइल सेव कर सकते हैं
अब डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
डेस्कटॉप पर फाइल सेव होगी
आप ब्राउज फोर ओथर फोल्डर्स पर भी क्लिक कर सकते हैं
और फोल्डर चुन सकते हैं जिसमें आपको अपना डॉक्युमेंट सेव करना है
अब डाइलॉग बॉक्स में फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें
यह आपको फाइल प्रकार यानि फाइल टाइप के ऑप्शन या फाइल एक्सटेंशन बताता है जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं
लिबर ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल टाइप है ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जोकि डॉट ओडीटी एक्सटेंशन प्रदान करता है
ओडीटी ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मेट या ओडीएफ फॉर्मेट के लिए स्वरुप है जोकि वर्ड डॉक्युमेंट के लिए ओपन स्टैंडर्ड मानक है जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है
यह भारत सरकार की ओपन स्टैंडर्ड इन ई गवर्नेंस पॉलिसी द्वारा भी स्वीकृत है
डॉट ओडीटी टेक्स्ट डॉक्युमेंट्स में सेव करनेजो कि लिबर ऑफिस राइटर में ओपन की जा सकती हैके अतिऱिक्त आप अपनी फाइल को डॉट डॉक और डॉट डॉक्स फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं जो कि एमएस ऑफिस वर्ड प्रोग्राम में ओपन की जा सकती है
एक और लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन जो अधिकतर प्रोग्राम्स में खुलते हैं वह है डॉट आरटीएफ जोकि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है
अब ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप फाइल टाइप ऑप्शन के करीब प्रदर्शित ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा कोष्ठक में डॉट ओडीटी देख सकते हैं
अब सेव बटन पर क्लिक करें
यह आपको राइटर विंडो पर ले चलते हैं जिस पर टाइटल बार पर आपका दिया हुआ फाइलनेम और एक्सटेंशन होगा
अब आप राइटर विंडो में टेक्स्ट डॉक्युमेंट लिखने के लिए तैयार हैं
ऊपर चर्चा किए फॉर्मेट के अलावा राइटर डॉक्युमेंट को डॉट एचटीएमएल में सेव कर सकते हैं जोकि एक वेबपेज फॉर्मेट है
यह उसी तरह से किया जाता है जैसे कि पहले समझाया गया है
तो मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव एएस ऑप्शन पर क्लिक करें
अब फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और कोष्ठकों में ओपनॉफिस डॉट ओआरजी राइटर ऑप्शन
यह ऑप्शन डॉक्युमेंट को डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देता है
सेव बटन पर क्लिक करें
अब डाइलॉग बॉक्स के एएसके व्हेन नोट सेविंग इन ओडीएफ फॉर्मेट ऑप्शन में चेक करें या क्लिक करें
अंत में कीप करेंट फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि डॉक्युमेंट डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ सेव हुई है
स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एएस पीडीएफ पर क्लिक करके डॉक्युमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं
पहले जैसे स्थान चुनिए जहाँ आप सेव करना चाहते हैं
ऐसा आप मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन और फिर एक्सपोर्ट एएस पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं
डाइलॉग बॉक्स जो नज़र आ रहा है उसमें एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें
एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी
चलिए फाइल पर और फिर क्लोज पर क्लिक करके इस डॉक्युमेंट को बंद करते हैं
अब हम देखेंगे कि लिबर ऑफिस राइटर में एक मौजूदा डॉक्युमेंट कैसे खोलें
resumeओडीटी
डॉक्युमेंट खोलते हैं
एक मौजूदा डॉक्युमेंट खोलने के लिए ऊपर मेन्यूबार में फाइल पर क्लिक करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें
आपको स्क्रीन पर एक डाइलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है
यहाँ उस फोल्डर को खोजें जहाँ आपने अपनी डॉक्युमेंट को सेव किया है
तो डाइलॉग बॉक्स के ऊपरी बाएं कोने में छोटे पेंसिल बटन पर क्लिक करें
इसमें नाम है टाइप आ फाइल नामे
यह लोकेशन बार नामक एक फील्ड ओपन करेगा
यहाँ आपको जो फाइल का नाम चाहिए उसे टाइप करें
तो हम फाइल का नाम रिज्यूम टाइप करते हैं
अब सूची में जो फाइल का नाम रिज्यूम दिखाई पड़ता है उसमें रिज्यूम डॉट ओडीटी चुनें
अब ओपन बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि resumeओडीटी फाइल खुलती है
बारी बारी से ऊपर टूलबार में ओपन आइकन पर क्लिक करके तथा आगे की प्रक्रिया को उसी तरह करके आप एक मौजूदा फाइल को खोल सकते हैं
आप डॉट डॉक तथा डॉट डॉक्स एक्सटेंशन वाली फाइल को राइटर में खोल सकते हैं जोकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है
अब आप देखेंगे कि फाइल में बदलाव कैसे करें और उसे उसी फाइल नाम से सेव कैसे करें
अतःपहले बाएं माउस बटन पर क्लिक करके रिज्यूम टेक्स्ट को चुनें फिर इसे टेक्स्ट पर ड्रैग करें
यह टेक्स्ट को चुनेगा और चिन्हांकित करेगा
अब बायाँ माउस बटन छोड़ दीजिए
टेक्स्ट अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए
स्टैंडर्ड टूलबार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें
अतः टेक्स्ट बोल्ड हुआ है
टेक्स्ट को पेज के मध्य में लाने के लिए टूल बार से सेंटर्ड आइकन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि टेक्स्ट पेज में मध्य में संरेखित हुआ है
अब टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं
टूलबार में फोंट साइज फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन मेन्यू में 14 पर क्लिक करते हैं
अतः टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ 14 हो जाता है
फोंट नामे फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर फॉन्टनेम के रूप में अंडोटम को चुनें
टूलबार में सेव आइकन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि बदलावों के बाद भी फाइल उसी फाइलनेम से सेव हुई है
जैसे ही आप डॉक्युमेंट सेव कर लेते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं मेन्यूबार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें यह आपकी फाइल बंद करेगा
हम लिबर ऑफिस राइटर के स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा
राइटर तथा उसमें विभिन्न टूलबार देखे
राइटर में नया डॉक्युमेंट तथा मौजूदा डॉक्युमेंट कैसे खोलें
और कैसे डॉक्युमेंट सेव करें
कैसे डॉक्युमेंट बंद करें
व्यापक असाइनमेंटनियत कार्य
राइटर में नया डॉक्युमेंट खोलें
practiceओडीटी नाम से सेव करें
यह टेक्स्ट लिखें थिस इस माय फर्स्ट असाइनमेंट फाइल सेव करें
टेक्स्ट को रेखांकित करें
फॉन्ट साइज़ को बढ़ाकर 16 कर दें
फाइल बंद करें
निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
अगर अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं
हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स कार्यशालाएँआयोजित करते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट सकीना द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद